यहाँ पर कुछ आदमी जम्प जम्प कर रहैं हैं यहाँ पर कुछ आदमियों के लिए मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर बहुत सारी लाइटें भी डली हुई हैं यहाँ पर हरे हरे पेड पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इतनी प्यारी लाइटें लगी हुई हैं बहुत ही सुंदर उजिला दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पत्थरों की डिज़ाइन इतनी सुन्दर दिखाई दे रही है।

मकान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं मकान बहुत ही अच्छे लग रहे है यहाँ पर बहुत अच्छे जंगले भी दिखाई दे रहे है बड़े - बड़े खंभे --